यह जो चित्र है यह शादी विवाह का चित्र है ये जिसमे से ऐसा प्रतीत होता है की शादी हो रही है।